पलंग पर हम तें दुई सिराणा दिखेण लग्यां और अगाड़ी मा हम तें दुई कामला भी दिखेण लग्यां।

ये चित्रा हम तें भोत सारा लोग छा दिखेण लग्यां जून यफणी भोत सारी भीड़ छन मचाईं यफणा हम ते बड़ा बड़ा डाला छन दिखेण लग्यां जे का अगाड़ी हम तें कुछ बड़ी बड़ी इमारतन दिखेण लगीं।

पिछाड़ी फणि हम तें कुछ फोटो फाटो भी दिखेण लगीं और एक लेट भी दिखेण छ लगीं।